और एक अंकल और एक अंटी यहाँ पे खड़े है। यहाँ पे छोटी छोटी घास भी उग रही है और ए अंकल सर मे टोपी--

यह एक खेत हैं और इस खेत को अभी खोदा गया हैं इसमें काफी सारे पत्थर और पानी थोड़े थोड़े डालें है ये अभी सूखा हैं।

यह एक कार्यालय ऑफिस है यहाँ पे एक वॉच दीवार पे टंगी है और एक यहा पे फॅन भी टंग रहा है।

यह एक गाओं में बोहोत बडासा तालाब हैं यहाँ पे आसपास बहोत बड़े-बड़े पत्थर और जंगल हैं।

और यहाँ पे बादल का व्यूव ऐसा हो रहा की बारिश होने वाली है।

यह बहुत ही पहाड़ का इलाका है यहाँ पे बहुत ही बड़ा पहाड़ ही पहाड़ हैं।

और यहा पत्थर ही पत्थर हैं यहा पर पत्थर के अंदर इसे स्टेयर्स बने हुए हैं यहा पे काफी बड़े बड़े पत्थर है और यहा पे जंगल भी हैं और सुख गए हैं जंगल अभी।